बाइक भी खड़ी है यहाँ पे। फिर दो जेन्ट्स भी खड़े हैं। एक बैग टांगे हुए हैं।

यहाँ एक खाली जगह और यहाँ पे एक कोलेज लिखा हुआ है। कोलेज है।

और यहाँ पे सामने में एक बहोत बड़ा पेड़ है और एक शायद गाड़ी भी लगी हुई है थोड़ा-सा --

सजावट स्टेज जैसा दिख रहा है । लिखा हुआ है । कुछ बंगला में लिखा है ।